ये पूल है पूल के यहाँ पर सड़क भी है यहाँ पर कोई फोटो शूट करने के लिए आए हैं ।

जो खड़े है वो चश्मा लगाये है घड़ी पहिने है और चप्पल पहिने हैं ।

और एक तो छोटा सा घर जैसे दिख रहा है आसपास हरा सा दिख रहा है खेत है।

मिठाई सबका चाय वाले भी हैं शायद--

यहाँ पर इंसान लोग नही है कोई भी खाड़ी खाली -खाली दिख --

ये कोई जंगल एरिया हैं।

पत्ता सब पेड़ से गिर गया है नीचे है।

यहाँ पर सड़क हैं और सड़क के बीच में एक ठो बैल बैठा हुआ हैं।

और एक बाबा है चल रहे हैं उनके कंधे में झोला टंगा हुआ है।

तैयारी चल रहा हैं जिसे लग रहा हैं लाइट भी जल रहा अच्छे से इंसान लोग नए दिख रहे हैं शायद अंदर में होंगे।

और यहां पर हरा-हरा दिख रहा है।

यहाँ पर बैंक में बहुत लोग आए है काम करवाने के लिए और जा रहे है वापिस कोई कोई बैंक के सामने में बाइक सब का लाइन लगा है पोल खंबा भी है इंसान लोग भी हैं।

ये सब्जी मार्केट है यहां पर कई प्रकार के सब्जी दिखाई दे रहे हैं ।